ऐसे ही कई कलर में कपड़े रखे गए हैं।

और बहुत खाली जगह है यहाँ पे बहोत सुनसान जगह है।

यहां पर देखिए स्टेज दिख रहा है। स्टेज के अ --

यहां पर देखिए लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं और जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं और वह पोस्टर पर पोस्टर लेकर खड़ी हैं लड़कियां।